और कुछ लैंप्स लगे हुए हैं।

औ कुछ मैंग्जींस रखी हुईं हैं।

अ एक लाइट बी दिखायी दे रही है ब्लब दिखाई दे रहा है।

थोड़े बहोत पेड़ लगे हुएं हैं।

यहाँ पे एक खम्बा दिखाई दे रहा है।